इस मूर्ति के चारों तरफ छोटी-छोटी मूर्तियां भी बनी हुई हैं और इस मूर्ति के पीछे एक ओरेंज कलर का कपड़ा है।

और इस तालाब के सब आजू-बाजू बहुत बड़े-बड़े छोटे-छोटे पेड़ हैं बहुत हरियाली है और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और खुला आसमान --

बहुत से लोग नमाज पढ़ रहें हैं और सफ़ेद कलर की दिवाल है यहाँ पे चारो तरफ।

मूर्ति के बीच काला कलर का द्वार है उसमें एक सफ़ेद बोर्ड रखा हुआ है वो मूर्ति हुई है।

ये एक दीवल है इस दीवाल मे के खिड़की है खिड़की के ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ है उस बोर्ड मे लिखा है अब्दुल मजीद मेमोरियल लाइब्रेरी --

ये एक मस्जिद है ये बहुत बड़ी मस्जिद है| इसमें तीन ऊपर टावर्स है गोल-गोल व हरे कलर के मस्जिद नीचे से सफ़ेद कलर की है मस्जिद के चारों तरफ--

ये एक ऑफिस है इस ऑफिस के चारो तरफ लैपटॉप्स रखे हुए है टेबुल के ऊपर लैपटॉप्स रखे हुए है और कुर्सी रखियाँ हुई है।

ए--क भैया गाडी को ऊपर कर के लिफ्टिंग कर रहे है और चारो तरफ लाईट ही लाईट है और एक टिंच--।

ये एक कार शोरूम है यहाँ पे बहुत सारी वाईट और ब्लैक कलर की कार खड़ी हुई है| एक यहाँ मैनेजर ऑफिस भी है।